और गुब्बारे से गोल आकार की काफी सारी डिजाइन बनाई हुई है।

किसी बागान या बगीचे का यह एक दृश्य दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक पेड़--

मछली बाजार का यह दृश्य दिखाई दे रहा है जहाँ पर बहुत सारे दुकानदार एक क्रम में अपनी दुकान पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और ईसाई का यह मास्टर या मास्टराइन बच्चों को हाथ से बनाने वाली कला के बारे में बता रहा है यानी हस्तकला के बारे में --

इसके अलावा फूल के द्वारा भी काफी अच्छी सजावट की गई है जो--

अपने कैमरे में कैद कर लिया है और यह भवन जो दिखाई दे रहा है काफी पुराने समय का है जो पहले समय में राजा महाराजा हुआ करते थे।